ये दोपहर का समय है और इसमें सूरज नीचे आ चुका है और बच्चे खेल रहे हैं मैदान में--

और इसमें वायर भी है और यहां पर एक लिफाफा भी है ब्राउन कलर का।

और यहां चेयर भी है और ये पार्लर --

और यहां पर एक घड़ी भी है और यहां एक स्टैचू भी है।

बीच में दो गाड़ी वाइट कलर की है और--

फैक्ट्री दिख रही है और यहां पर दो चिमनिया भी है।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

यहां पर एक गुरुद्वारा है।

यह एक खुला मैदान है।

और दूर दूर बाकी पहाड़ भी है।